यह मध्य विद्यालय नावाडीह सिलफरी स्कूल है अंचल चण्ड मनी डी प्रखंड चकाई जिला जमुई है।

ढलाल है कुछ दिन के बाद बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा प्लीज आप लोग अपने बच्चों को भेजिएगा पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कूल बनेगा जंगल --